और ब्लैक कलर के पंखे भी लगे हुएं हैं।

और डस्टबिन भी रखे हुए हैं।

गाड़ी के ऊपर नंबर लिखा हुआ गाड़ी के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है।

पौधे वगेरा वृक्ष वगेरा भी लगे हुए --

ये एक पैलेस है पैलेस के अंदर एक--

जमीन के ऊपर हरी घास भी लगी हुईं हैं।

बहुत सारे गमले और बहुत सारे कलर्स भी रखे हुए हैं।

नोटपैड वगैरा भी रखे हुए हैं तीन चेयर्स लगी हुई हैं चेयर्स के ऊपर तीन लोग बैठे हुए हैं।

और बहुत सारी दुकानें भी बनी हुई हैं।

लाइट्स वाले खंभे भी लगे हुए हैं।

ये एक फर्नीचर की दुकान है दुकान के अंदर दो बेड लगे हुए हैं।